ब्लू कलर की मेट भी बिछी हुई है एक डस्टबिन भी रखी हुई है।

एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने अह ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है।

इस बच्चे ने येलो कलर की टी_शर्ट पहनी हुए--

इस दृश्य में एक पब्लिक प्लेस दिखाई दे रही है जहां पे एस_बी_आई की एक बड़ी सी बैनर लगी हुई है।

बहुत से बाइक भी पार्क किए हुए नजर आ रहे हैं ।

एक कॉफी मशीन भी नजर आ रही है और सॉस के बॉटल्स भी रखे हुए हैं।

मणप्पुरम गोल्ड लोन की भी बैनर लगी हुई है।

बहोत सारे बाइक भी पार्क किए हुए है।

इस दृश्य में एक स्कूटी की शोरूम दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में एक बैंक दिखाई दे रही है।

लोहे के लगे हुए पाइप भी दिखाई दे रहे हैं ईंट भी रखी हुई है।

एक स्टेशनरी शॉप भी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रही है।